मेरे को सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है दीवाल दिखाई दे रहे है जिसका कलर बार येलो और रेड यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे है और कुछ चेयरे भी दिखाई दे रहे है।

ये दुकान दिखाई दे रही है इसके दीवाल का कलर पिंक और बाहर बहुत सारी बुके भी दिखाई दे रही है कुछ बॉक्स भी दिखाई दे रहे है लाईटे भी दिखाई दे--

बहुत सारी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है दीवार का कलर येलो रेड ग्रीन और बाइक है यहा पे नीचे जमीन दिखाई दे रही है भी दिखाई दे रहे है।